बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिजली के तार दिखाई दे रहे है खम्भे दिखाई दे रहे हैं खजूर दिखाई दे रही है पेड़ पे दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

यह एक प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। ट्रेन की पटरियाँ दिखाई दे रही है। आसमान दिखाई दे रहा है। बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं।

स्टेशन दिखाई दे रहा है लोग दिखाई दे रहे है रेल की पटरियां दिखाई दे रही है लाइट दिखाई दे रही है प्लेटफार्म बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां एक अ अ अम में सिलेंडर दिखाई दे रहा है कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहै हैं।

हम्म अ एक छतरी लगी हुई दिखाई दे रही है। एक दुकान लगाई हुई दिखाई दे रही है उसमें पानीपुरी रखी हुई दिखाई दे रही है। ईमम ईंट की दीवार दिखाई दे रही है। गेट दिखाई दे रहा है।